वहीं पे बगल में बैलून से सजावट की हुई है।

ऊपर में होर्डिंग पे ज्योति नर्सिंग होम लिखा हुआ है।

वही पे ढेर सारी किताबें रखी हुई है।

यह दृश्य एक मेडिकल सेंटर के बाहर की है।

दृश्य में एक खाली कमरा है जिसके कलर व्हाइट कलर की है।

किनारे पे टाइल्स लगे हुए हैं व्हाइट और ब्लू कलर के।